जनपद पंचायत वास्तानार लिखा हुआ है।

यहाँ पर दुकान है नारियल रखा हुआ है झाड़ू रखा हुआ है ठेला रखा हुआ है पीले कलर का पन्नी लगा हुआ है पन्नी में लगा हुआ है आगे से--

ग्रीन कलर येल्लो कलर पिंक रेड कलर की लाइट से डेकोरेशन किया गया है।